ये एक रेस्टोरेंट का अंदर का चित्र है जहाँ पे कुछ टेबल --

ये बड़ा सा व्हाइट कलर का बिल्डिंग है दो तला दो तला का ऊपर जो छाद है वो टीना देते--

व्हाइट कलर का मार्बल लेके रखा हुआ है पास में कुछ फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ है।

सामने की बातें कर रही है ये स्टेशन में भी लाइन दिखाई दे रही है लाइन में अभी ट्रेन नहीं है ट्रेन के लिए --

जो प्लेटफार्म है वहाँ पे ओवर ब्रिज दिखाई दे रहे --

ये एक रेस्टोरेंट का अंदर का चित्र है जहाँ पे व्हाइट कलर का टेबल है उसके पास में सोफा टाइप का कुछ चेयर सजा के रखा है--

दो एक आदमी नील शर्ट पहन के खड़ा हुआ है एक आदमी व्हाइट शर्ट रेड शर्ट पहन के पैदल जा रहे हैं।

यहाँ औरत भी खड़ी है सलवार पहन के --

जो महंगा व्हाइट कलर का हूडी स्लीवलेस पहना के--

एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में ब्लू कलर का पानी दिखाई दे रहा है वो क्लोरिंग पानी है उसके सामने कुछ उसके ऊपर--

खाना वगैरह ग्लास वगैरह स्ट्रॉ देके रखा हुआ है यहाँ पे एक आदमी एक और--

कुछ पेड़ सजा हो के रखा है पेड़ का पत्ता पूरा हरा में भरा हुआ है।

ऑरेंज कलर का टी- शर्ट पहन के यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे बड़ा सा फ्लोर है ऊपर में फसलिंग करा हुआ है लाइट चल रहा है यहाँ पे बहुत सारा स्कूल का बच्चा--

यहाँ एक रोड है बड़ा सा यहाँ पे पार्किंग करके रखा है कुछ ऑटो टोटो ऑटो टोटो कुछ चल रहा है यहाँ पे आदमी लोग चल रहा है उधर--

वो ट्रेनिंग कर रहा है यहाँ पे एक आदमी व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के --